घूमने यह ग्राउंड काफी बड़ा है इस ग्राउंड में बहुत सारे छोटे-छोटे घासे हैं इस ग्राउंड के चारो ओर बहुत ही बड़े-बड़े पेड़-पोधे लगे हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर भी हैं ।

पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे हाथी के भी चित्र लगे हैं यहाँ पर एक आदमी फोटो खींच रहा है यहाँ पर --

यहाँ पर नाख़ून भी छूते है यह सैलून में शीशे लगाए हुए हैं यहाँ पर --

बहुत सारी सब्जियाँ रखी गयी हैं बहुत सारे ठेले भी हैं यह ठेलो पर बहुत सारे झालमुरी भी बेचे जाते हैं बहुत सारे --